एक आदमी जो अंदर जा रहा है उसने पीले रंग के कपड़े पहेन रखे हैं और नीले रंग की जीन --

एक ने ब्लू कलर शर्ट और एक ने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है ऊपर व्हाइट कलर का बल्ब जल रहा है।

जिस के बाहर एक लड़का लोअर और टीशर्ट झाड़ू लगा रहा है।

बाहर का व्यू है जहाँ दो लोग खड़े है एक लड़का और एक लड़की लड़के ने नीले रंग की कोट पैंट पहन रखी है।

सैनिक साइकिल मार्ट के बहार की तस्वीर हे ये जिसके बहार एक दो रिक्षास खड़े हे इ-रिक्शा छत पे एक औरत उन्हें देख रही है नीचे की तरफ।

जो ग्रीन ग्रीन की है पिंक रेड कलर की इसमें फूल लगाए हुए है आर्टिफीसियल खिड़की है उसके साथ-सामने।

हरा-भरा जंगल है घास झाड़ियां जंगल के बीचों-बीच ब्रिज है ।

ये घर घर का फ्रंट फ्रंट व्यू नहीं है बैक व्यू है ये।